इधर को एक मॉनिटर दिख रहा है और एक की बोर्ड दिख रहा है एक माउस दिख रहा है।

हां जो कि नजारा में दिखया गया एक दुकान है।

दुकान में बहुत सारे अलग अलग कलर के प्रकार के कपड़े सब रखे गए हैं।

उस साइड ट्रिस सब है बड़ा बड़ा।

पुट्टी दिख रहा है और का वायर भी दिख रहा है।

ये सब दिख रहा है।

इधर पे एक कपड़ा शॉप है।

लाइट लगा हुआ है और रेड कलर का पोस्टर जो लगा हुआ है और नीचे प्लेट है।

इधर बहुत सारे दवाई सब पड़े हुए हैं।

और एक कैमरा फोन स्टैंड है।

नदी में पत्थर सब हैं।

दिख रहा है बैठने के लिए।

होटल के बाहर बहोत सारे प्रकार के बाइक खड़े हुए है।

एक मिरर है और तीन इंसान दिख रहा है।

और बिल्डिंग के उधर में ट्रीस का सामने ए_सी का फैन है।

ऊपर में वाइट कलर का छत दिख रहा है ब्राउन कलर का बोर्ड दिख रहा है।

टीन का सामने गाछ है।

साइड में एक नाला है।

घर है और मोटर का पाइप है।

इधर होटल लिखा हुआ है।

और एक यहां पे एक बड़ा सा शोरूम है।

शोरूम के छत के ऊपर एक स्टार टंगा हुआ है।

व्यक्ति जो की प्लेयर सबका फोटो खींच रहा है।

उ जो कि ये दिखने में एक बजार है।

पर एक केबल तार दिखाए गए हैं।

जो कि ये नजारा दिख रहा है जो की सुंदर सा नजारा है।

और एक प्लेट के ऊपर दो नोट हैं।

है वाइट कलर का और नीचे रास्ता है।

दा आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिख रहा है।

एक ने येलो हेलमेट एक ने ग्रीन हेलमेट और एक ने ग्रे हेलमेट पहना है।

ये पता नहीं क्या है।

लाल ऑटो दिख रहा है।